इसमें जो चारो तरफ शटर लगी हुई है। इसमें काफी दुकाने हैं। एक शटर खुली हुई है। एक काउंटर नज़र रहा है सामने के तरफ लंबी सी रास्ता बनी हुई है उसमे चारो तरफ शटर लगी हुई है। ऊपर की तरफ लाइट जल रही है।

एक शोरूम है । सामने की तरफ एक बड़ा सा टाटा मोटर्स का शोरूम नज़र आ रहा है। जिसमे व्हाइट कलर से टाटा मोटर्स लिखा हुआ है।

एक बाइक शोरूम है सामने की तरफ एक बड़ा-सा बाइक शोरूम नजर आ रहा है जिसके बाहर एक ग्राउंड बना हुआ है जिसमे बोहोत सारी बाइक खड़ी हुई है।

यह एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है। सामने के तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें बीचों बीच एक बड़ा सा ग्राउंड बना हुआ है जहां पर बोहोत सारी बाइक और बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई है।

एक गार्डन है । सामने की तरफ बड़ा सा गार्डन नजर आ रहा है जिसमें तरह तरह के डिज़ाइन वाले फूल बने हुए और पेड़ पौधे लगे हुए है।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

यह एक पेट्रोल पंप है। सामने की तरफ एक पेट्रोल पंप का बड़ा सा ऑफिस नजर आ रहा है जिसमें ऑरेंज कलर से इंडियन ऑयल लिखा हुआ है। सामने की तरफ वॉल पर भी यहाँ पर इंग्लिश में लिखा फ्यूल सेंटर ।